देखिए लोग पत्थर के नीचे जाकर एन्जॉय ले रहे है जो कि बहुत ही उन्हें मज़ा लग रहा होगा ऐसा हमे लग रहा है आप भी ऐसा करना चाहते है तो आप भी वहां पे जा सकते हैं।